चित्र में मुझे लगे छोटे छोटे पौधे और ग्रास दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे माले से सजी आभूषण शॉप --

चित्र में मुझे एक ट्रेन दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे गाड़ी वा कार रोड पर चलती हुई दिख--

चित्र में मुझे कुलर दिख रहा है।

चित्र में मुझे हाथी घोड़े और कई सारी दुर्गा माता की मूर्तियां रखी हुई दिख रही हैं।

चित्र में मुझे इस्टील की रेलिंग दिख रहीं हैं।

बशे दिखाई दे रही हैं और चित्र में मुझे ठेला खड़ा दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।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

चित्र में ऊपर सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है।